इस पिक्चर में बादल नजर आ रहे हैं सफेद कलर के।

कुछ लड़कियों ने ड्रेस पहनी है आसपास--

ह ह ह इस पिक्चर मे एक व्यक्ति--

रेड कलर है माथे पर तिलक लगा हुआ है।

ब्लू कलर का और बहोत सारे फ्लावर से डेकोरेशन किया गया है।

और फ्रेम में बाबा जी के फोटो नगी हुई है दो चेयर लगे हैं।

ट्राई कलर के बैलून लगे हैं व्हाईट पॉट लगा है बहोत सारी चेयर्स रखी है विथ टेबल और व्हाईट चेयर --

ऑरेंज कलर मे कार्पेट बिछाया है ग्रीन कलर का है चेयर रखी हुई है बड़े बड़े स्टिकर्स लगे हुए है।

कुछ कस्टमर सब्जियां खरीद रहे हैं आसपास गाड़ियां रखी हुई हैं।